हैलो गाइस जैसा की आप देख सकते है यह भी एक नेचर का व्यू है जो की बोहोत ही प्यारा व्यू है।

हेलो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे रोड का व्यू है यहाँ पर बहुत बड़ी -बड़ी पाइप बिछी हुई है यहाँ पर दो-तीन बकरियां भी देख सकते हैं।